यहा एक रोड है रोड पर एक टॅम्पो खड़ा हुआ है उसके पास भी तीन व्यक्ति खड़े हुए है।

ये बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ चार लड़कियों ने मिलकर एक ड्रॉइंग बनाई है वह ड्रॉईंग बहुत ही सुंदर लग रही है।

पीछे दो लड़के है अम और पीछे बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है बहुत ही अम बड़े पोस्टर लगा हुए है बहुत सुंदर कलर सुंदर डांस कर रहे है और--

यहाँ एक स्टेज बना हुआ है स्टेज गुलाबी कलर के पर्दे और बहुत सारे --